यहां टेबल रखी है यहां डेकोरेशन भी हुआ है।

यहां पे ट्रक खड़ा हुआ है उसी पे जो है बोरी चढ़ रही है।

ऊपर मौसम बहुत मस्त बना है।

नीचे समुद्र में खूब सारे पानी है।

जगह है यहाँ पास ही में पूल है।

ये पिलर ये खंबे जैसा भी कुछ लगा हुआ है।

बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चे यहां बहुत खुश होते हैं।

एक आदमी लाल कलर का बैठा है पहने और नीचे सीढ़ी लगी हुई है।

बहुत लोग आए हैं यहां पैसे निकालने।

यहां पे एक पहाड़ की तरह है।

वो बोतल में पानी पी रहा है।

यहां पे कुछ पेड़ भी हैं कुछ पत्तियां भी लटक रही हैं।

उसके बगल में एक लड़का खड़ा है।

ये बहुत अच्छा लग रहा है।

यहां एक फंक्शन हो रहा है।